यह तस्वीर किसी शादी की है।

यह तस्वीर किसी चर्च की है ऐसा उसके ऊपर स्टार बना हुआ है।

तस्वीर में बहोत सारे खिलौने देखे जा सकते हैं।

यह मुस्लिम समाज की फोटो है इस फोटो में तीन मुस्लिम लोग सफेद कपड़ा पहने और टोपी लगाए देखे जा सकते हैं।

तीन पारंपरिक तौर से बने हुए घर देखे जा सकते हैं।

कइ लोग काम करते हुए देखे जा सकते हैं।

यहां पर बनी मकानों का छत टिने से बना हुआ है।

इस बाजार की छत बांस से बनी हुई है।

एक टेबल है जिस पर दो कप पीले रंग के रखे हुए हैं।

कुछ घर ऐसे भी हैं जो जरा पुराने लगते हैं।

कई लोग कसरत करते हुए देखे जा सकते हैं।

लड़कियों ने स्कूल के यूनिफॉर्म को पहना हुआ है।

व अंदर एक छांव में बौद्ध भगवान की तस्वीर बनी हुई हैं।

यहां एक मकान देखा जा सकता है जिसके पीछे सुंदर पहाड़ हैं।

और दीवारें लाल रंग की है एक आदमी जो तस्वीर ले रहा है।